ये तस्वीर में भी ही शादी का मंडप दिख रहा है। ये शादी के मंडप का गेट हैं। गेट पे अलग-अलग रंग के पर्दे लगाए गए हैं।

घास से काटे हुए अलग प्रकार के झाड भी बनाए गए है दिखने मे काफी सुंदर दिख रहे है।

उसके उधर भी दो फोटो लगाए गए है जिसमें लड़का लड़की खड़े है नए-नए कपड़े पहन के ऐसा लग रहा है की काम चालू है सब बम्बू लेके जा रहे है।

उसमे एक बाबा की तुर्बत बनाई गयी है और वही आजु-बाजु में लोग बैठे हुए है ये दी-- जगह खूब ही सुन्दर दिख रही है।

पीछे अलग ही तरह के कुर्सी सजाई गई हुई है। पीछे अलग-अलग मंडप बनाए गए हैं और खूब सारे लोग भी खड़े हुए हैं।

और पानी के पाइप गिरे हुए हैं ऊपर पतरा लगाया गया है दूसरी तरफ दो-तीन गाड़ियां धो के खड़ी हुई हैं।

यहां एक लाइट का खंबा भी लगा हुआ है और बाहर एक छोटा सा घर जैसा कुछ तो बनाया गया --